और यह लाल रंग का है इसका प्रकाश बहुत अच्छा --

और इसमें है एक लेडीज है एक दो लेडीज हैं एक जेन्ट्स है।

ये ये गाड़ी लगने का पार्क है लगाने का पार्क ये पार्क के आगे --

और रोड पे टेम्पो टेम्पो चल रहा है एक स्कूटर बाइक से जा रहे हैं।

बगल में तालाब है तालाब में बहुत सारा पानी हैं।

और बच्चे लोग पीले रंग का टी-शर्ट पहने हुए हैं अपना जूनून भरे दौड़ रहे हैं।

और रोड के ऊपर मे ओवरब्रिज बना हुआ है और टेंपू मे आदमी बैठे हुए है टैम्पू के --

यहां घूमने के लिए एक पार्क है और --